कुछ समान भी टंगा हुआ है हुक पे भी बहोत सारा समान टंगा हुआ है।

साड़ी रखी है जिसका रंग पर्पल दिखाई दे रहा है उसपे चार साड़ी रखी हुई है जिनका रंग --

हम देख पा रहे हैं कि नीचे गाड़ियों के छोटे मोटे पार्ट्स पड़े हैं।

ऊपर एक कंसील लाइट भी जल रही है और बराबर में एक दरवाजा है उसके ऊपर भी कंसील लाइट जल रही है।

और उसके पीछे एक एल_ई_डी भी लगी हुई है और सामने कई सारी लाइटें लगी हुई है और --

एक जूस का कलर डार्क ब्राउन है एक जूस का कलर ऑरेंज है और एक जूस का कलर रेड है।

ऊपर वाली शेल्फ़ में हम देख पा रहे हैं कई सारे आचार के डब्बे रखे हुए हैं और आचार के डब्बे व छोटे टिन के डब्बे भी है।

पे सामने बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है और उसपे फ्रेशर्स लिखा हुआ है दो लोग भी बैठे हुए हैं दोनों ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है कुर्सी भी रखी हुई हैं।

दो तीन आदमी भी दिखाई दे रहे है एक स्टेज बना हुआ है उसकी फूलों कई सारे चमेली के फूल से डेकोरेशन हुई भी है।

और सड़क पे भी कई सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं दो शीशे दिखाई दे रहे हैं।

ये एक तरह का ढाबा दिखाई दे रहा है कई सारे भगौने भी दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी पीछे खड़ा है हाथ बांध के जिसने सफेद व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है और पीछे एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

अंदर की हम जैसे देख पा रहे हैं एक लाल कलर का थैला रखा हुआ है और कई सारे बर्तन रखे हुए हैं।

वो उन मछलियो को खरीद रहा है और उसके बराबर में एक औरत खड़ी है जोकि मछली बेच रही है।

ढपली भी ले रखी है और वो झांकी निकाल रहे हैं और वो व्हाइट कलर कि लूंगी में खड़े हैं।

इस फोटो में जैसा कि हम देख पा रहे है एक प्लेट रखी हुई है मेज पर जिसमे की सफेद कलर के चावल--

इस फोटो में जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये भी एक किरना स्टोर दि दुकान दिखाई दे रही है।

और उसके बराबर में और भी दुकान दिखाई दे रही है और और बैनर पर मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ--

स्क्रीन्स भी दिखाई दे रही हैं उधर एक औरत भी बैठी हुई है।

बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसपे की थोड़ा बहोत कूड़ा और एक पेड़ दिखाई दे रहा है जिसपे कोई पत्ते नहीं है।

एक दिवार दिखाई दे रही है जिसपे कुछ लिखा हुआ है।

शायद कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।

कई सारे रंग बिरंगे परा पदार्थ भी दिखाई दे रहे हैं और मशीन भी दिखाई दे रही है।

और ऊपर एक ए_सी का कूलर भी दिखाई दे रहा है एक दीवार पे चिपका हुआ झंडा भी दिखाई दे रहा है और साथ में ग्रिल पे--

इस फोटो में जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये एक हलवाई की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें कई तरह की मिठाइयां पहिली शेल्फ में रखी हुई है।

इस फोटो में जैसा कि हम देख पा रहे हैं यह एक चर्च लग रहा है जिसमें --

बहोत सारे शैंपू के पत्ते और कुरकुरे नजर आ रहे हैं एक वेटिंग मशीन भी दिखाई दे रही है।

उसके काउंटर पे कई सारे डब्बे भी नजर आ रहे और एक--

इधर आदमी भी ब बैठा हुआ नजर आ रहा है और बराबर में दीवार पर नजर बट्टू भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

विकेट कीपर बना हुआ है उसने हेलमेट भी पेहना हुआ है नेट भी लगा हुआ है लगता है ये क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं।

फोटो में जैसा कि हम देख पा रहे हैं एक बच्ची दिखाई दे रही है शायद वो कुछ खा रही है पीछे कई सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक आर्टिफिशियल झंडा भी दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है की शादी समारोह है।

बिल्डिंग में कई सारी झालर भी दिखाई दे रही है और--

ये शायद पानी से खेल रहे हैं और नाली में बड़े हुए हैं।

ये एक किराना स्टोर दिखाई दे रहा है कोलगेट टंग रहे हैं टूथब्रश टंग रहे हैं।

पेप्सी रखने की क्रेट भी रखी हुई है कई सारे कुरकुरे के बिस्कुट भी टंग रहे हैं कुरकुरे के पैकेट भी टंग रहे हैं।

यहां पर बाइक भी खड़ी हैं एक आदमी भी खड़ा है एक स्टूल दिखाई दे रहा है और दो तीन बाइक भी खड़ी हुई हैं।

झंडा (جھنڈا) भी भारत देश का झंडा भी दिखाई दे रहा है और एक बुलेट का पोस्टर भी लग रहा है।

और जिसमें की कई सारे लोग बैठे हुए है शीशे दिखाई दे रहा है पीली एक क्रैट दिखाई दे रही है जिस पे कई सारा सामान रखा हुआ है।

पत्ती भी नजर आ रही हैं एक आदमी भी काम करता हुआ नजर आ रहा है।

उन्होंने हाथ सीधे कर रखे हैं उनके बराबर में एक--